ऊपर से रेलिंग दिया हुआ है एक गेट दिख रहा है।

ग्रिल बहुत बड़ा सा ग्रिल का गेट है।

और करकट चढ़ाया है आगे से पोस्टर लगाया हुआ है।

एक मंदिल है दू तल्ला।

और इधर बाल्टी में फूल लगाया हुआ है गेंदा का पीला।

जो हाथ पोछने वाला भी दिख रहा है।

और क्रीम भी दिख रहा हैं।

शीशा का लगाया हुआ है बल्ब बल रहा है।

नीचे में टाइल्स

और हरा कलर का गेट है।

एक बिल्डिंग है उसमें एक आदमीन बैठे हुए हैं।

नीचे टाइल्स बिठाया हुआ है।

यहां पर बैंक है।

मंदिल हैं मंदिल में दु तीन बिल्डिंग हैं एक शेड हैं।

जगह जगह पर बल्ब लगाया हुआ है।